दोनों स्टंप का कलर मुझे लाइट ब्राउन नजर आ रहा है।

नजर आ रहा है और मुझे कुछ पर्दा भी नजर आ रहा है ब्लू कलर वाला।

फोटो के अंदर मुझे एक पोस्टर दिखाई दे रहा है जहां पर स्वीट होम गर्ल्स पी_जी लिखा हुआ है।

उसके नीचे पर ईश ई_एस_एस सेक्टर ईटानगर लिखा हुआ है और एक एरो का साइन दिख रहा है।

एक बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर नजर आ रहा है।

इस फोटो के अंदर मुझे एक रूम नजर आ रहा है जो की एक सलून है।

और मुझे विंडो के सामने पिंक वाला पर्दा भी दिखाई दे रहा है।

व्हाइट ऑरेंज ब्लैक एंड ब्लू और मुझे मोनपा का --

अपना नजर आ रहा है जहां पर स्क्रिप्चर लिखता है।

अल्युमिनियम एक्सेल फैन नजर आ रहा है जिसका कलर ग्रे है।

और मुझे बिल्डिंग भी नजर आ रहा है।

इस फोटो के अंदर मुझे एक रूम नजर आ रहा है।

इस दुकान के अंदर में जो बहुत सारे बुक्स पेंस --

और मुझे बहुत सारा बीच अंब्रेला भी नजर आ रहा है।

और बहुत सारा व्हीकल भी नजर आ रहा है जोकि है गाड़ी स्कूटी बाइक

और मुझे एक लाल कलर का लैंटरन भी दिखाई दे रहा है राइट वाले बिल्डिंग पर मुझे--

उसके नीचे पर मुझे बहुत सारा फ्लावर पॉट नज़र आ रहा है।

इस फोटो के अंदर पर मुझे बहुत सारा--

इस फोटो के अंदर पर मुझे एक घर नजर आ रहा है।

बंबू और कारपेट से बनाया हुआ एक बेंच भी नजर आ रहा है।

मुझे बहोत सारे इंसान मोबाइल पकड़ते हुए भी नजर आ रहा है।

डेस्क के सामने पर मुझे एक इंसान भी दिखाई दे रहा है।

और मुझे एक फैन भी दिखाई दे रहा है।

मुझे प्लास्टिक रस्सी भी दिखाई दे रहा है।

फाउंटेन के आसपास मुझे बहुत सारे स्टील पाइप भी नजर आ रहा है।

इस फोटो के अंदर मुझे एक इंसान नजर आ रहा है।

इसके अंदर इस फोटो के अंदर मुझे एस_एल_एम फोर थाउजेंड नजर आ रहा है।

और मुझे बहुत सारा ऑटो रिक्शा स्कूटी बाइसाइकिल दिखाई दे रहा है।

इस फोटो के अंदर मुझे बहुत सारा स्टील का ग्लास नजर आ रहा है।

और इस सिल्वर ग्लास को ट्राइएंगल का शेप में दिखा रहा है इस फोटो में।

इन दोनों गिलास के पीछे में मुझे एक ब्लैक कलर वाला सूट केस भी नजर आ रहा है।